दिख रहे है अलग अलग प्रकार के और कुछ दो पहिये वाहन भी खडे है दूर तरफ हरे हरे पैड दिखाई दे रहे है।

एस तस्वीर मै कांच का गेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर कुछ अलमारी के अंदर बहुत सारा तरह तरह का समान दिखाई दे रहा है और ऊपर सफेद लाइटे जल रही है ऐ_सी लगा हुआ है लाल काउंटर है काले रंग की लाल रंग काले रंग की बहोत सारी खुर्शिया रखी।

शटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ तारे लटकी हुई है आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर भी कुछ बोर्ड लगे हुए है और नीचे कुछ दो कुछ पहिये वाहन--

इस तस्वीर में एक कांच का गेट दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ दो महिलाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक जैसी साड़ी पहनी हुई है और अंदर की तरफ एक आदमी और एक अ महिला --